पेज काउंटर पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
यह प्रत्येक रिफ्रेशपर गणना करेगा कि कितने लोगों ने आपके पेज को देखा है
अतः हर बार जब कोई पेज पर जाता हैवेल्यू बढ़ जाएगी एक टेक्स्ट फाइल में संचित होगी और यह उपयोगकर्ता को दर्शायी जाएगी
या आप उसको अपने लिए रख सकते हैं
यह आपकी इच्छा है यदि आप दर्शाना चाहते हैं
कृपया ध्यान दें यह इसको करने का बहुत ही सरल तरीका है
यह विशिष्ट विजिटर्स नहीं गिनता
मैं विशिष्ट विजिटर्स ट्यूटोरियल शीघ्र ही बनाऊँगा
जब आप इसको देख रहे होंगे सम्भवतः तब वह उपलब्ध होगा
अतः उसको देखिये
वह अधिक विशिष्ट होगा
वह इप एड्रेस का वर्णन करता है
हालाँकिअभी के लिए यह एक बुनियादी काउन्टर ट्यूटोरियल है और यह डेटाबेस स्टोरेज की अपेक्षा फाइल स्टोरेज इस्तेमाल करता है
तो पहला कार्य हमें करना है कि एक फाइल बनाएँ जिसमें अपनी वेल्यू रखें
इसको करने के 2 तरीके हैं
या तो राइट क्लिक करें और या नया टेक्स्ट डाक्युमेन्ट बनाएँ
या मैं आपको क्या दिखाऊँगा कि खोलने के लिए फाइल कैसे बनाएँ जोकि फंक्शन फोपेन है
और हम इसको फाइल वेरिएबल में रखेंगे
किन्तु यह अनिवार्य नहीं है
और हम लिखेंगे countपह्प और इसके लिए एक अन्य पैरामीटर चाहे आप लिखने के लिए पढ़ने के लिए या इसको जोड़ने के लिए उदाहरणस्वरुप
अतःचलिए मैं लिखने के लिए बोलूँगा
ठीक हैअब मैं फ्व्राइट लिखूँगा और मैं फाइल पर लिखूँगा और मैं शून्य की वेल्यू बनाऊँगा
अतःअब हम अपना पेज खोलेंगे और रिफ्रेश करेंगे
हमारे पास counterपह्प है
इस पर क्लिक करिये और जब हम वापस जाते हैं देखिये यदि आपको countपह्प मिला है
तो txt अतः चलिए इसे रिफ्रेश करते हैं
ठीक है तो अब हमारे पास एक txt फाइल होनी चाहिए
चलिए मैं इस countफ्प को निकाल देता हूँ
अब हमने यह कर लिया है और हमें सचमुच में इस कोड की आवश्यकता नहीं है
अतः मैं इस भाग को डिलीट कर देता हूँ किन्तु मैं इसे रखूँगा और अब मैं कहूँगा कि मैं फाइल से पढ़ना चाहता हूँ
यह आप हाथ से भी टाइप कर सकते हैं
आपको केवल पढ़ने के बजाय लिखने के लिए एक फाइल बनानी होगी
अतः हमें हमारी फाइल मिल गयी और उसमें हमें शून्य की हमारी वेल्यू मिल गयी है
अतःचलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं
हाँ हमें countटीएक्सटी शून्य के साथ मिल गया है जोकि इसको पढ़ेगा और इसको उसमें डालेगा
अतःअब मुझे फाइल का कंटेंट्स प्राप्त करने की आवश्यकता है
अतःfopen के स्थान पर मैं file get contents लिखूँगा
अतः मैंfile get contents टाइप करूँगा
और यह countटीएक्सटी के कंटेंट्स को लाएगा
फिर मैं एचो लिखूँगा और मैं वेरिएबल इस्तेमाल करूँगा और मैं एचो फाइल लिखूँगा
अब यह क्या करेगा कि यह file get contents कहेगा और हमारी टेक्स्ट फाइल के कंटेंट्स को हमारे काउंट वेरिएबल के साथ यहाँ ले आएगा
और यह फाइल के कंटेंट्स को एको करने कहेगा
अतःचलिए अपने पेज पर वापस जाते हैं और हम रिफ्रेशकरेंगे
काउंटर पर क्लिक करिये और अभी हमें शून्य मिला
रिफ्रेश करते हैं
यह अभी भी शून्य है जैसा यहाँ दिख रहा है
यदि मैं इसे हेलो में बदलता हूँ और पुनः मैं अपने पेज पर गया और रिफ्रेशकिया इसके पास हेलो वेल्यू होगी
अतः इस समय फाइल में जो कुछ भी है हम केवल उसे एको कर रहे हैं
और अभी यह शून्य है पूर्णांक शून्य
अब इसे एकोकरने के लिए मैं यूवे हैड फाइल विजिटर्स लिखूँगा
अतः यह हमें कुछ इस प्रकार देगा
अब मैं क्या करूँगा कि मैं विजिटर्स नामक एक नया वेरिएबल बनाऊँगा
और मैं लिखूँगा इक्वल टो फाइल
मैं इसको अधिक प्रभावशाली और साथ ही पढ़ने में अधिक सरल बनाने के लिए यहाँ ऊपर रखूँगा
और मैं लिखूँगा विजिटर्स और हम बोल सकते हैं कि यह क्या होने जा रहा है
और फिर हम क्या लिखेंगे कि विजिटर्स visit ओआरएस न्यू इक्वल्स थिस विस्टोर्स प्लस 1
अतः यह हमारी नई वेल्यू होगी
फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और लिखता हूँ filenewअतः मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ
मैं इसको countटीएक्सटी की तरह खोलूँगा क्योंकि यह वही है
और अब मैं इस फाइल पर लिखने के लिए बोलूँगा
अब यदि यह a था इसका मतलब अपेंड अतः मैं इस फाइल में कुछ संलग्न कर रहा हूँजिसका मतलब मैं इसमें जोड़ रहा हूँ
मैं क्या चाहता हूँ कि इसके ऊपर लिखूँ इसलिए मैं द्व रखूँगा
और फिर मैं फ्व्राइट लिखूँगा जैसा कि हमने अपने पहले भाग फाइलन्यू में किया था
और वेल्यू जो मैं लिखना चाहता हूँvisitorsnew है
यह कार्य कर रहा है
चलिए इससे पहले कि आप इसे रन करें तुरंत इसे देख लें
हमें हमारी मुख्य फाइल मिल गयी है और यह हमारे countटीएक्सटी का कंटेंट्स होने जा रहा है जोकि इस समय शून्य है
हम अपने विजिटर्स नामक वेरिएबल को इस फाइल के कंटेंट्स में निर्धारित कर रहे हैं
हम उपयोगकर्ता को एको कर रहे हैं कि यहाँ पर कितने विजिटर्सहैं
और हम विजिटर्स 1के साथ एक नया वेरिएबल बना रहे हैं अर्थात व्यक्ति जो इस समय पेज को देख रहा है
यह महत्वपूर्ण बन जाता है
वह व्यक्ति यहाँ अतिरिक्त 1 जोड़ रहा है
और फिर हम एक नई फाइल खोल रहे हैं जैसा कि हमने ट्यूटोरियल के प्रारम्भ में देखा था किन्तु इसकी जगह हम लिखने के लिए द्व इस्तेमाल कर रहे हैं
फिर हम अपनी नई फाइल में नई वेल्यू लिख रहे हैं जोकि 1 से बढ़ी हुई है
अतःचलिए रिफ्रेशकरते हैं और आप देख सकते हैं ओह
यह कार्य नहीं कर रहा है
ठीक हैतो चलिए इस कोड को जाँचते हैं
चलिए विजिटर्स की वर्तनी जाँचते हैं visit ओआरएस new
Visit ors
यह कारण है
मुझे यहाँ एक एन रखना चाहिए था
अतः countटीएक्सटी
अब इस बार हर बार जब हम रिफ्रेशकरते हैं हम 1 जोड़ रहे हैं
आप देख सकते हैं कि वेल्यू वास्तव में बढती जा रही है
अब स्पष्टतःइसको रिसेटकरने के लिए आपको बस इतना करना है कि आह
चेतावनी countटीएक्सटी बदल गई हैक्योंकि हमने इसको संपादित कर दिया है
मैं लिखूँगाreload फ्रॉम डिस्क
और यह 19 में बदल गया जैसा कि आप देख सकते हैं यह यहाँ पर 18 दर्शा रहा है
इसका कारण है कि हम इसे अपनी नई वेल्यू रखने से पहले ही एको कर रहे हैं
अतःअधिकतम दक्षता के लिए और वास्तविक सही वेल्यू पाने के लिए मैं इस कोड को यहाँ नीचे रख दूँगा
यथार्थःजब मैं यहाँ रिफ्रेश कर रहा हूँ और चलिए कहते हैंहमें 25 विजिटर्स तक मिल गये और हम यहाँ वापस आते हैंहमारे पास 26 वेल्यू है
ठीक है मैं यहाँ शायद थोड़ा अव्यवस्थित हो रहा हूँ
इसको करने का ऐसा कोई बड़ा प्रभावशाली तरीका नहीं है
यह सदैव ही विजिटर्स एको करेगा
अतः केवल विविधता के लिए हम visitors new लिखेंगे
अतः यह बिलकुल उसकी के बराबर होगा ओह नहीं
विजिटर्स न्यू एक और वर्तनी की ग़लती
सही है चलिए बढ़ाकर 35 करते हैं और हम कंटेंट्स में जा रहे हैं और यह वेल्यू 35 के बराबर है
सब कुछ स्थान नहीं होता जब आपको एक कोड के साथ सामना करना हो जो इसकी तरह सरल हो किन्तु यह मदद करता है
ठीक है तो यह बुनियादी ट्यूटोरियल है
यदि आपको इस पर कोई सहायता चाहिए तो कृपया हमारे साथ बने रहिये
किन्तु अभी के लिए इसको प्रयास करिये इसके साथ जाइये
इसके साथ ही एडवांस्डउच्च श्रेणी काउंटर पर मेरा अगला ट्यूटोरियल देखिये जो इप एड्रेसेस को महत्व देता है
देखने के लिए धन्यवाद
मैं रवि कुमार आईआईटीबॉम्बे की ओर अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद